इसका नाम दीपक कुमार है । यह अपना खुदका दुकान खोलेवा किताब बेचते हैं बोहोत अच्छी-अच्छी किताबे बेचते है।

वाओ सो नाइस ये जिराफ़ है ये कार्फी लम्बा होते है काफी खूबसूरत भी होते है देखने में बोहोत अच्छा लगता है ये।

इसमें लड़का-लड़की सेल्फी रहे है एन्जॉय कर रहे है |

वो कार को ऊपर उठाया हुआ है जो अच्छे से वाश कर रहे है अपने ज़िन्दगी चलने के लिए पैसे कमाने के लिए लोग कर रहे है ।